बिल्डिंग के बाहर एक सड़क दिख रही है सड़क पर पानी पड़ा हुआ दिख रहा है।

लोग भी दिखाई दे रहे है आसपास बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए दिख रहे है पीछे कुछ घर भी बने दिख रहे है।

सामने दुकान जो दिखाई दे रहे हैं पटरी पर एक मालगाड़ी भी दिखाई दे रही है कुछ बिजली के काम में भी दिख रहे हैं।

कुछ बिजली के खम्बे भी लगे दिख रहे है अंदर कुछ लोग भी खड़े दिखाई दे रहे है कुछ गाड़िया भी खड़ी दिख रही है।

बाहर एक बिजली का खंबा भी दिख रहा है एक जनरेटर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा एक लेटर बॉक्स भी दिख रहा है।

डब्बे रखे हुए दिख रहे है।

एक बेंच भी लगी हुई दिख रही है हरे कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ दिख रहा है।